इस आदमी ने वाइट कपड़ा हाथ पर लेकर रखा है।

इसमें एक छोटा से सलोन का हिस्सा दिखाई दे रहा है।

बच्चों के साइड पे कुछ डंबल्स भी दिखाई दे रहे हैं।

रंग बहुत ही साफ और सोयिल है।

दुकान के अंदर दो इंसान हैं।

एक रूम में रखा गया हैं जिसका वॉल पिंक कलर का है।

रॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे दो लड़का दिखाई गए हैं जिसने ब्लैक कलर का शर्ट पहना है और एक ने रेड कलर का जैकेट पहना है और पैंट पहना है दोनों ने।

इसमें सिलेंडर भी दिखाई दे रहे हैं।

एक लड़का ए_टी_एम रूम के अंदर दिखाई दे रहे हैं।

घर के बाउंड्रीज वॉल से है।

इस जगह में आई लव कत्लीचेरा लिखा हुआ है।

रूम का वॉल का कलर व्हाइट कलर है।

दो काम कर रहे हैं और एक खड़े हैं।

मिरर के ऊपर कुछ स्पीकर रखे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।